जा रही है बगल में तीन चार बिल्डिंग है और एक एक बगल में लाइट --

है बड़ा ही खुश है और एक बच्चा फिसलन की तैयारी कर रहे हैं और जीवन पार्क बड़ा ही --

छठ पूजा के घाट में है और एक हमारे जो पुरुष हैं फ़ोन ले के सेल्फी लिए हैं।

जो ये कुर्सी खड़ा हुआ है और बीच में दो भैपर लाइट दिया हुआ है और दो आदमी उधर जा --

एक ही के हाथे में ब्लूटूथ स्पीकर है और गमछा बने हुए है।

यह एक डैम का फोटो है जो कि इतना मस्त टाइम में खींचा गया है।

जो कि जमुई में स्थित है और आदमी ब्लैक पैंट और लाल टी शर्ट पहने हुए हैं।